दुकान के ऊपर हम कुछ चिप्स -के पैकेट लगे हुए देख पा रहे हैं साथ ही हमें यहां दो लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य एक गाड़ी का है जहां हमें बहुत ही बड़े-बड़े स्पीकर्स दिखाई दे रहै हैंजिन्हैं देख हमें ऐसा लग रहा है मानो जैसे की --

हम यहा एक आदमी के हाथमे एक आमरूद देख पारहे हे जिसे देख ऐसा लाग राहा हे मालूम इसने इसे अभी अभी तोडा हे देखने मे यह दृश्य अच्छा लग राहा हे।

वही हमें पत्थर पर चढ़ा हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है यहां हमें नीचे एक और आदमी नजर आ रहा है आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं देखने में ये दृश्य अच्छा लग रहा है।

यह तस्वीर एक बैंक की तस्वीर है जहां हमें बैंक का पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां हम एक ए.टी .एम. भी देख पा रहे हैए.टी.एम. के बाहर हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

याहा हमे कीकाई सारी तसबीरे लागि हुई दिखाई दे रही हे हाम यहाकुछ लोगोको बैठा और कुछ लोगोको खड़ा होकार कुछ प्रैअर बोलते हुये देख पारहे हे।

वही वहां उसने अपने टोकरी में डालकर बटखरे से नाप रहा है यहां हम कुछ और लोगों को भी देख पा रहे हैं आसपास हमें बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही है।